इस चित्र में हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

और अंदर बहुत सारी लाइटें जल रही हैं बाहर कुछ भीड़ रखे हुए हैं।

और वह ऑरेंज कलर की जर्किन पहने हुए है।

और ब्राउन कलर की पट्टी के भी डाल्स लगे हुए हैं।

और यह हॉस्टल की बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई हैं।

जिसके अंदर तीन-चार कुर्सियां रखी हुई हैं।

और बाहर पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

और दो गमले रखे हुए है सफेद कलर के।

इस चित्र में हमें एक मारुति सुजुकी का सुजुकी ऑटो रेट सर्विस नजर आ रहा है।

इसमें पार्क में एक लड़का बैठा हुआ है तीन छत्रियां लगाकर--

कुछ लड़के बाइकों से खड़े हुए हैं और कुछ खाली खड़े हुए हैं।

ड्रम भी खड़ा हुआ है जो कि पीले कलर का टैंकर दिखाई दे रहा है।

और ऊपर एक नीली दीवार पर घड़ी लगी हुई है।

और हाथों में मोमबत्तियां लिए हुए हैं।

कुछ बच्चे क्रोस को पकड़े हुए हैं।

कुछ लेडी सें खड़ी हुई हैं जो कि सर पर दुपट्टा ओड़े हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक बहुत खूबसूरत बड़ा समंदर दिखाई दे रहा है और उस पर--

इस चित्र में हमें एक छोटा सा ऑफिस दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक हमें बहुत बड़ी चट्टान दिखाई दे रही है।

और इस पार्क के झूले पर दो लड़कियां बैठी हुई हैं जो कि लाल और पीली ड्रेस पहने हुए हैं।

और यह मैदान खाली पड़ा हुआ है।

और इस दुकान में फ्रूटोओ का समान रखा हुआ है।

और एक माइक्रोवेव भी रखा हुआ है जिसके अंदर पेटीज रखे हुए हैं।

और कुछ लड़के केप लगाए हुए हैं और कुछ गमछा बांधे हुए हैं और यह मंदिर व्हाइट कलर से पुता हुआ है।

जिसमें तीन मूर्तियां रखी हुई हैं।

और ऊपर एक हैलोजन लगी हुई है।